बंधन बैंक बोर्ड है ब्लू कलर का रेड कलर का सर्किल है ।

गणपति बुक लिखा हुआ है रेड बोर्ड पे सरस्वती विद्या मंदिर शिशु मंदिर नवोदय लिखा है ब्लू कलर का स्टाल है साइड में स्काई ब्लू शटर है बाइक खड़ी हुई है।